बस पीले रंग की है और ये गवर्नमेंट बस है। इसके आगे लिखा है। इसके आगे एक झंडा भी बना है।

यहाँ पर तीन बसे खड़ी है और पीछे उसके आगे एक बिल्डिंग भी है। यहाँ आदमी चल रहे है और लाल रंग की बस भी है और आसमान भी बड़ा भरा है हरा भरा नहीं नीला है।